जिसपे कसरत करने के लिए बहोत बड़ी जा रही है एक मशीन रखी हुई है।

जिस पे एक बड़ी सारी आइसक्रीम की मशीन रखी है।

और एक नीले रंग का टंकी रखी है।

ये कीतर की दुकान है।

यहां पर एक टेबल के ऊपर--

जिनको बंडल की तरह बांधा गया है।

ये अ अ एक बहुत बड़ा सा हाल है।

मेज़ के लम्बी सी टेबल पे भी बैठने के लिए लाइन से कुर्सियों को लगाया हुआ है।

अअ- अ और और एक लोहे की सीढ़ी रखी हुई है।

ये एक पौधों की नर्सरी है जिसपे काफी सारे पेड़ और फूल लगे हुए है।

घर के नीचे एक कार भी खड़ी हुई है।

टेबलों के ऊपर जग और गिलास रखा है।

कुछ आदमी बैठे हैं और दो आदमी उनको खाना खिला रहे हैं।

उस लाइट का आग जमीन पर पड़ रहा है।

जिसमें काफी सारी छत पर लाइटें लगी हैं।

सोफे भी बहुत ही खूबसूरत हैं।

एक मंदिर नुमा गुम्बद बना है उसके आसपास भी लोग बैठे हुए हैं।